यह एक घर के का काम का दृश्य है जहां पर नीचे में दो कार है।

यहां पर एक बाइक भी दिखाई दे रहा है।

मछली का इंटरनल पार्ट भी काट कर कुछ थोड़ा मोड़ा रखा हुआ है।

बायें साइड मे एक बाइक है जिसके ऊपर में एक हेल्मेट रखा हुआ है।

यह एक किराने दुकान का दृश्य है जहां पे ढेर सारा परचून की समान राखी हुई है और न्यूट्रल्स वगैरा भी रखे हुए हैं।

शीशे के गेट के आगे में एक स्कूटी लगा हुआ है और एक आदमी बाइक पर बैठा हुआ है इस साइड भी एक इंसान दिखाई दे रहा है।

यह साइड में कुछ छोटा सा पौधा भी दिखाई दे रहा है।

दोनों बैनर के बीच में एक लंबा सा खंभा है जिसके ऊपर में दो लाइटे लगी हुई है।

यहाँ पे नीचे में रेड कलर का कारपेट भी बिछाया हुआ--

यह एक ग्राउंड का दृश्य है जहां पे बीच में एक टेंट बना हुआ है जिसके नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

दाएं साइड के सामने में एक छोटा सा घर भी दिखाई दे रहा है जो कि सफेद कलर का है उसके नीचे भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

उसके बगल में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे सफेद कलर का ये एक हाल है यहां पे नीचे में टाइल्स भी सफेद कलर का लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे फूल वगैरह भी लगे हुए हैं यहां पे ढेर सारा पेड़ भी है।

यह एक पार्क का दृश्य जहां पे ढेर सारे हिरन दिखाई दे रहे हैं ।

बिल्डिंग का कलर क्रीम कलर और मैरून कलर से है यहां पे ढेर सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस साइड में एक आदमी है जो कि कुछ काम कर रहा है।

पर में करकट भी लगाया हुआ है।

यहां पे ऊपर में एस एस मेमोरियल कॉलेज भी लिखा हुआ है।